इसका रंग है उजला और हरा कलर ।

में एक चर्च दिखाया गया है उसका रंग है पीला और ब्लू कलर का रंग है।

बगल में एक डी_जी भी दिखाया गया है और एक ग्रिल भी दिखाया गया है और दो खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी बैठा हुआ है व एक लाइट भी दिखाई दे रहा है।

बगल में एक सीनी टाइप का दिखाया गया है।

जनरेटर भी दिखाया गया है और तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आयरन दिखाया है एक पंखा दिखाया है एक स्टैंड वाला पंखा दिखाया गया है।

पेट्रोल टंकी पर पलस्तर भी नहीं हुआ है।

कूट में भी कुछ रखा हुआ है बगल में एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

चर्च दिख रहा है और बहौत सारे आदमी भी बैठे है और बगल में लड़कियां खड़ा हुए है।

इनमें खुटा भी दिख रहा है और बहुत सारे ऐसे ऐसे गाय हैं जो हरी घास खा रही हैं।